हाथी का सूंड ऊपर की ओर है।

यहां पर एक बच्चा खेल रहा है।

इसके बाइक के आगे एक कार्टून है।

बहुत सारे बेड लगे हुए हैं बेड के ऊपर एक रेड कलर का डब्बा रखा हुआ है।

कुर्सी का रंग ब्राउन है।

पेड़ पौधे का रंग हरा भरा है यहां पे बांस है बांस का कलर पीला है।

इसके ऊपर में प्लास्टिक ल है उसके पीछे घर --

यह एक क्लास रूम का दृश्य है यहां पे बहुत सारे लड़के लड़की पढ़ाई कर रहे हैं।

यहां बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

उसके बगल में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

एक आदमी के हाथ में पइसा और पर्स है एक आदमी ए_टी_एम के अंदर है।

यहां पे बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यहां पे मोबिल रखा हुआ है उसके बगल एक बाल्टी रखा हुआ है।

यह एक फर्नीचर दुकान का दृश्य है यहां बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

लकड़ी का काम हो रहा है।

उसने अंगूठी पहना हुआ है उसके बगल में किशमिश का पैकेट रखा हुआ--

उसने यहां पे एक कंप्लेन रखा हुआ है कंप्लेन के बगैर नीचे एक डब्बा रखा हुआ है।

यहां का डेकोरेशन का बलून का कलर सफेद ऑरेंज और ग्रीन है।

यहां पे फ्रिज है फ्रिज के बगल में एक टेबल है।

ये बगल में एक आदमी मछली मार रहा है।

यहां पेड़ पौधे का रंग हरा भरा है।

यह एक रोड का दृश्य है।

एक आदमी रोड पे चल रहा है।